इस पर वोडाफोन और एयरटेल फ़ोर जी का बैनर लगा हुआ है।

बगल में एक घर बना हुआ है।

सोफा दिखाई दे रहा है जिसपे कुशन भी रखा हुआ है एक--

बाहर से इस्कॉन टेंपल का बोर्ड भी लगा हुआ है।